पीछे भी कुछ टेबल बेंच पड़ी है और उसके पीछे--

ये एक मोबाइल फोन की दुकान है यहां पर तरह तरह के मोबाइल के पैकेट पड़े हैं।

लोहे के चद्दरे लगे हुए पीछे ऊपर भी गैरेज के अंदर लोहे के चद्दरे लगे हुए हैं।